पर उषा देवी का नाम लिखा हुआ है |

जिन्होंने दिया होगा यह बनवाया --

लगातार पेड़ है और देखिए बड़े-बड़े पेड़ ।

और बहुत सारी उम्म तार --

ये आदमी पैन बेच रहा हैकिताब दुकान है ।

अंदर मे बहुत सारे लोग पूजा करने आए हुए है ।